लोहे की सरिया का पिलर भी बना हुआ है।

नीचे वॉल एकदम खाली सन्नाटा है ये बड़ा सा हाल है।

टी_वी लगी है सामने ऊपर की तरफ नीचे की तरफ दुकाने है।

इसमें दो मेजे हैं कुर्सियां भी लगी हुई हैं।

सामने दरवाजा है खिड़कियां भी दिखाई दे रही हैं।

सामने स्विमिंग पूल है जिसमें पानी भरा हुआ है।

इसमें ऊपर की तरफ स्लेब ढली है।

सामने बिल्डिंग है बिजली के तार है बिल्डिंग के उपर ऑपरेशन लिखा हुआ हैं।

बाहर पिक्चर्स लगी हुई है दीवार पर आस पास बिल्डिंगे बनी हुई है।

जमीन में पेड़ की जड़ें भी दिख रही हैं।

आगे वाल बैरिकेड रेलिंग है।

पीछे टांगे का चक्के का डिजाइन बना हुआ दिखाई दे रहा है।

गोल गोल चकरी लटक रही है।

कार बाइक के खिलौने हैं पंखा भी लगा हुआ है ऊपर की तरफ लाइट लगी हुई है।

एक चिमटा स्पून भी साइड में रखा हुआ दिख रहा--

नाव पर रस्सियां भी बंधी हैं।